दुकान है दुकान के बीच कई सारा समान रखा है।

इस फोटो में बताया है कि यहां पे--

दुकान है दुकान के बाहर कई सारी कार्स खड़ी हुई है वो कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

दुकान है दुकान के बाहर कार खड़ी हुई है ब्लैक कलर की और कई सारे यहां पे--

एक स्कूल है स्कूल के बाहर कई सारे पोस्टर लगाए हुए हैं कुछ--

हाथों पे एक आदमी ने दस्ताने बांधे हुए--

वही पड़ी हुई है टेबल के ऊपर कुछ चेयर्स लगी हैं कई सारी लाइट --

टेबल पर कई सारी मच्छिस लगाई हुई है।

कई सारे यहां पे ना जानवर रखी हुई है जो पैकिंग या लिफाफे में--